बगल में एक किचन एरिया भी दिया गया है।

जो कलरफुल लाइट से ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है।

ऊपर की तरफ डेकोरेटिव लालटेन्स लगी एंट्रेंस पे फूल की माला और लाइटिंग से सजावट की गई है।

जैसे लगता है कि ये कोई ओकेशन या सेलिब्रेशन हो रहा--

और एक बड़ा सा ट्यूबलाइट सामने की तरफ लगा हुआ है।

और रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है।

ये तस्वीर एक थीम एंड वाटर पार्क के एंट्रेंस गेट का है जहां--

जिसका नाम हुसैनगंज टर्मिनल वन लिखा है बगल में लिफ्ट की भी सुविधा है।

बैकग्राउंड में शोरूम का इंटीरियर क्लीन और प्रोफेशनल लग रहा है जहां एक स्टाफ मेंबर डेस्क के पास बैठे हैं।

सामने की तरफ जूट से बने हुए शेड लगाए गए --

बुक्शेल्फस और कुछ इनडोर प्लांट्स भी दिख रहे हैं।

दीवार पर पेंटिंग्स लगी हुई हैं औऱ कुछ टेबल्स पे डेकोरेटिव आइटम्स भी रखे गए हैं।

बाएं तरफ और भी इं किताबों रखी हुई हैं टे--

और सीलिंग पर एक फैन लटका हुआ है।

इसमें किताबे स्टेशनरी और बर्तन रखे हुए--

आस पास थोड़ी डेकोरेशन भी है जैसे पेंटिंग क्लॉक और एक छोटा सा दिया भी जल रहा--

तीन पर ग्रीनरी व लटके हुए कलरफुल पेपर बॉल्स और लाइट लगे हुए हैं।

यह स्ट्रक्चर मॉडर्न और सुंदरता से बना हुआ है।

लेफ्ट साइड में हाई चेयर्स के साथ लॉन्ग वुडन काउंटर है।

तस्वीर में एक शहर का हिस्सा दिख रहा है जहां मॉडर्न बिल्डिंग्स और ग्रीनरी का अच्छा कंबीनेशन है।

दूसरी तरफ एक स्टाइलिश ब्लू और वाइट कलर की गोल में बनी बिल्डिंग है।

जो एक रेस्टोरेंट में सर्व किया गया है।

ब्लैक प्लैटर में गोल स्लाइस रोल रखे गए हैं।

ऊपर से हरी चटनी और दही ब्रिजिंग की गई है।

गार्निश में धनिया भी रखा है प्लेट के एंड में टोमेटो फ्लावर डेकोरेशन भी है।

बैकग्राउंड में और भी कलरफुल कपड़े लटके हुए दिख रहे हैं।

यह तस्वीर एक गांव का है जहां पर एक साफ सुथरी नदी दिख रही है।

सामने की तरफ अअअ ज पहाड़ दिख रहा है।

यह एक पूरा वातावरण साफ सुथरा और सुंदर लग रहा है।

यहां पर उम्म कई सारे अपार्टमेंटस दिख रहें हैं।

पिक्चर एक मॉल का है जहां पर एक तरफ कपड़ों की दुकान है जहां से कुछ लोग कपड़े लेकर निकल रहे हैं।

दूसरी तरफ एक वी_आई_पी एंड स्काई बैग का छोटा सा स्टाल लगा है जहां पर--

और डेकोरेशन में कुछ पेड़ पौधे भी लगाए गए--

जहां पर ब्राउन कलर का एक सीटिंग एरिया शेड में बनाया गया है।

कई सारे लोग अ ग्रुप बनाकर खड़े हैं।

तो कुछ लोग स्लाइड्स पे अ बैठे हुए हैं।

बच्चियां सर्कल में हाथ पकड़ के डांस कर रही हैं।

और कुछ लोग बातें भी कर रहे हैं।

उम् जिसे देखने के लिए काफी लोग जुटे हैं।